रंग बिखरे हुए हैं लड़कियां बैठी हुई है।

गुब्बारें लगे हुए हैं कुर्सियां लगी हुई हैं फैन लगा हुआ है।

कपड़े लगे हुए हैं लड़कियों के लड़--

मालाये लगी हुई है।

दुकान है पेड़ लगे हुए है।

हॉस्पिटल बना हुआ है काफ़ी सारी बिल्डिंग बनी है ए_सी लगे हुए हैं।

बिजली का खंभा लगा हुआ है शेड पड़ा हुआ है यहां पर।

मोबाइल की शॉप है काफी कुछ लोग बैठे हुए हैं कुछ लोग खड़े हुए हैं।

एक लो औरत हैं जो बैठी हुई हैं।

घास लगा हुआ है पार्क बना हुआ है।

रूम सेक्टर अठारह।

गमले रखे हुए है घास लगा हुआ है।

यहां पर शादी की तैयारी हो रही हैं।

दुकान है यहां पर बंसल स्टोर का बोर्ड लगा हुआ है।